जिसमें हिंदी इंग्लिश और उर्दू तीनों लैंग्वेज में हाजीपुर--

ये पिक में हमें कई बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

यह पिक में हमें एक नदी दिखाई दे रही है। नदी के अंदर कई लोग दिखाई दे रहे हैं।

उसके पास एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

सर ने ब्लू कलर की शर्ट और वाइट कलर की पैंट पहेन रखी है।

लड़के लड़कियां उनका काम कर रहे हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

फुग्गे भी दिखाई दे रहे हैं।

येह पिक में हमें बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

ये पिक हमें एक साइकल शॉप का अनिवार्य कराता है।

तीनों लड़कों ने जैकेट्स पहन रखे है।

उनके गले में डॉक्टर वाला वो लगा हुआ हैं।

थंबे दिखाई दे रहे हैं और कई घर भी दिखाई दे रहे हैं।

ये पिक में हमें लाइज़ॉल कंपनी की बॉटले दिखाई दे रही है।

एक के ऊपर एक रखी हुई है।

एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

सारी की सारी की लोहे की बनी हुई है।

और हमें एक घर भी दिखाई दे रहा हैं।

किले पर बोर्ड पर लिखा हुआ है।

लाल कलर की उसमें सारी की सारी डिजाइन करी हुई है।

ये पिक एक रात की पिक है।

क्लीनर सारी की सारी चीजें बॉटलो मे रखी हुई हमे दिखाई दे रही हैं।

यह पिक एक मॉल का पिक है।